इस फोटो में हमें यहां पर--

और यहां पर दो व्यक्ति सोए हुए भी नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में हमें यहां पर बहोत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं।

ब्राउन कलर का है साथ में ही एक वाइट कलर की प्लेट भी--

सामने में स्टील की एक छोटी सी प्लेट में कुछ चटनी भी हमें दिखाई दे रही है स्टील के दो ग्लासेस भी हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें एक किचन दिखाई दे रही है जो कि अभी बन रही है।

इस पिक्चर में हमें यहां पर ग्लास दिखाई दे रहे है। ग्लास के अंदर कुछ पेंटिंग है।

सामने सोफा ब्राउन कलर का दिख रहा है।

यहां पर एक डॉग हमे जख्मी दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें एक खुला मैदान दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर की रेलिंग यहां पर हमें दिखाई दे रही है और कुछ यहां पर पत्थरों की दीवारें भी लगी हुई कार है।

यहां पर हमें व्हाइट कलर की नजर आ रही है।

यहां पर हमें ग्रीन रंग का कारपेट दिख रहा है साथ में ही कुछ--

अंदर के ओर हमें एक दरवाजा दिखाई दे रहा है सामने की और हमें --